गुलाबी कलर के फूल तथा उजर कलर के फूल धन्यवाद।

कोनो कार्य कर इ फोटो लगत बाटे यहाँ उजर कलर के बहुत सारा कुर्सी लगत बाटे मेहमान के बैठे ला।

ये फोटो में दो आदमी के दिखागल बाटे यहाँ साफ सफाई करलवा

सामने बाल्टी रखल बाटे।

ऐ कोनो बहुत बड़ा बिल्डिंग के फोटो बाटे।

कुछ गरीब बहुत शराब पिये हे और लग रहल बाटे हाँ बहुत अच्छा लग रहल बा।

ऊपर के जो सीलिंग बाटे ऊ उजरा कलर से पेंट कईले बा।